इस चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक खेत का चित्र है और ये एक पपीते की खेती है |

और ये आपे भी देखने में बहोत ही सुन्दर लग रही है और काफी अच्छी भी है और ये एक रेड कलर की है।